यहा पर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग देखने में काफी कलरफुल लग रही है यहा पे एक आ बोर्ड भी है और एक पोल --

यहा पे एक बहोत बड़ी सी नदी है और नदी के किनारे बहोत सारे पहाड़ है और यहा पे पेड़ भी दिख रे है और कसती भी --